हॉल का फोटो है। जहां पे पर्दे लगे हुए हैं।

सोफा रखे हुए हैं सब फर्नीचर ब्राउन कलर का बना हुआ है।

दुकान के अन्दर ट्रॉली बैग्स हैं स्कूल बैग्स हैं अलग-अलग बैग्स हैं।

रेलिंग के ऊपर बहोत सारे झंडे लगे हैं जोकी नारंगी रंग के--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

यहां पे बाहर एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है पंछी विहार।

जहांपे बहोत सारी इलेक्ट्रिक चीजे रखी हुई है जैसे प्रेस वगैरा--

खेती के ऊपर मेटल की रोड्स लगी हुई है रॉड के ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा बछा हुआ है।

और नीचे खेती के बीच बीच में लाइंस बनी हुई हैं।

गैरेज के अंदर बहोत सारी चीजें ऑयल पेंट वगैरा रखे हुए है।

पूल बाहर लंबे लंबे पेड़ लगे हुए है।

और नीचे मोबाइल नंबर लिखा है साइड में कुछ लोग खड़े हैं एक लड़के ने रेड टी शर्ट --